ये मंदिर है। इस मंदिर में ये सिंहासन पर ये मूर्ति स्थापित है जिन्होंने रेड कलर के कपड़े पहने हैं और यहां ला --

लाइट जल रही हैं बहुत सारी सर्किट जल रही ये घंटा लग रहा है घंटी बजाने वाली एक कारपेट बिछ रहा है टाइल्स लगी हु --

और एक खंबे लगे हुए हैं लाइट के खंबे हैं। यह लाइट के तार जा रहे हैं इधर से उधर और साइड में --

और ये सब अलग-अलग कलर में हैं रेड ब्लू पिंक --

का एक टायर पड़ा है। यह चार पांच लोग हैं जो की खड़े है। इस कार को देख रहे है ये सब --

ये एक कार है। एक व्हाइट कलर की कार है। इसकी आगे कि डिग्गी भी खुली हुई है। आगे का ढक्कन --